उसके बगल में बहुत सारी बैलून लगाई हुई है जो कि व्हाइट और पिंक कलर की--

सामग्री टांगी हुई है ऊपर मे बहोत सारे वाइट कलर के बेरोप्लस टांगे हुए--

एक इंसान बैठे हुए हैं एक इंसान जिसने ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पह--

उसके ऊपर एक काले कलर के फैन लगी हुई--

के बगल में एक और व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर का गंजी और ब्लू कलर का लुजर पहना हुआ है।

ऊपर में नोकिला नोकिला निकला हुआ हैं जो कि पीले कलर का है।

उसके बगल में कुछ चिप्स टंगी हुई है।

इसमें बैगनी कलर का शर्ट और काली कलर का पैंट पहना हुआ है।

बगल में एक निले कलर का टेबुल रखा हुआ है।

उपर में बहुत सारी फुले लगाई हुई है जो की पिंक कलर की रेड कलर की वाइट कलर की हैं।

उसके बगल में टेबुल लगाया हुआ है जिसपे गोल्डेन कलर और ब्लू कलर का पर्दा लगाया गया है।

ऑरेंज कलर का गेंदा का फूल लगाया गया है।

उसके पास में एक पीले कलर का पर्दा और रेड कलर का पर्दा लगाया हुआ--

पास में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हुआ है एक बच्चा जो की रेड कलर का पहना हुआ है।

जो कि व्हाइट कलर की और ब्लू कलर की और येलो कलर की और काले कलर की और ग्रीन कलर की है।

उसके पास में बहुत सारी गाड़ियां लगाई गई है।

ब्लैक कलर की रेड कलर की बाईकें लगाई गई हैं।

बगल में तीन पुरुष खड़े हैं और बैठे हुए हैं।

पास में बहुत बडा सा हरसइन का पेड़ है।

पास में छोटा सा घर बनाया हुआ है जिस पर सीटा मारा गया है।

सामने में वाइट कलर का ए_सी लगा हुआ है।

पिंक कलर के ब्लू कलर के और रेड कलर --

पास में कुछ डबुआ रखे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर के है।

दूसरा ट्रेन का बोगी जो पूरा खाली है।

उसके बगल में बड़ी बहुत बड़ी बड़ी पेड़े लगाई गई है।

एक दुकान जो की किराना दुकान है जिसमें बहुत सारी पिक्चरें टांगी हुई है जैसे कि लेज झालमुरी झाल सब।

जोकि ब्लू कलर ब्लैक कलर ग्रीन ब्लू कलर --

और सभी महिलाएं जो की वाइट कलर के कपड़े पहनी हुई है।

के पास में एक बस लगी हुई है जो की पिंक कलर कि है।

यह दृश्य में सामने बहोत सारे फूल है।

इस पे लिखा हुआ है नोट महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था।

उसपे एक अमरूद का पेड़ और एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा--

पास मे एक गाड़ी रखी हुए है हीरो होंडा जो कि ब्लैक कलर की है।

उसके पास में एक और व्यक्ति है जिसने रेड कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है।

सामने बहुत सारा पोस्टर लगाया हुआ है जिसपे अजीत ट्रेडिंग लिखा हुआ है।